यह एक लड़का है यह लड़का व्हाइट कलर का शर्ट --

और उसके पीछे शीशा भी लगा हुआ है और गेट के सामने पर्दा भी लगा है ।

यह एक मिनी बस है और बस के आगे में इंजन लगे हुए है यह रोड पे चलते है और सभी अअअ आदमी जहां बैठते है वहां बोक्स की तरह बने हुए है सब कट - कट के बोक्स है।